एक ब्लैकबोर्ड लगा हुआ है।

इसके लिए अंदर जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है यह ब्राउन और ब्लैक कलर का हैं।

यह एक टॉयज की शॉप है।

और अलमीरा में बहुत सारे टॉयज रखे हुए हैं।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

कुछ लोग बैंक से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक मंदिर की तस्वीर है।

पेड़ों के उस साइड में एक घर दिखाई दे रहा है और मिट्टी भी दिख रही है।

यहां पर अलमीरा बनी हुई है।

जिनमे मोबाइल रखे हुए हैं।

यह एक रूम है रूम में चेयर और टेबल लगे हुए हैं।

जिसे बैलून से डेकोरेट किया हुआ है।

बैलून हर्ट और रेड कलर के हैं।

फर्श के ऊपर कुछ कपड़ा दिख रहा है और पीछे लक्कड़ के दरवाजे रखे हुए हैं।

बस के पास एक गाड़ी भी खड़ी है।

और मेकअप का सामान दिखाई दे रहा है।

बॉल और रैकेट फर्श के ऊपर रखे हुए है।

यहां पर बहुत सारे पौधे हैं कुछ पौधे गमले में फर्श के ऊपर--

जीसके बाहर बहुत सारी साइकिल खड़ी हैं।

और एक चेयर भी रखी है और एक बट्ठल पड़ा हुआ है।

एक पंखा और झूमर दिखाई दे रहा है।

जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं।

कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा पेड़ है।

बाउल में स्पून रखी हुई है पीछे बेस्ट नंबर वन कॉफी लिखा हुआ है।

और दो चेयर रखी हुई है।

एक एल_सी_डी दिख रही है और कुछ मशीने रखी हुई हैं चेयर के पीछे दो टावेल दिखाई दे रहे हैं।